हूं हमारे यहां पर सभी प्रकार के कॉपी पेन पेंसिल रबर कंपास एवं अन्य प्रकार के स्टेसनरी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं ये लिखा हुआ है ये संजय संद्रवंशी जी का शॉप है।

जिसमें बंधा गोभी करेला है बैगन है टमाटर है।